जिनके हैंडल ब्लैक कलर के है इसके आस पास मुझे--

इस तस्वीर में मुझे खेत नजर आ रहा है जहां पे बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।

इस रूम में बहुत सारा सामान रखा गया है कपड़े वगैरह और यहां पे बाइक --

पार्क नजर आ रहा है जहां पे बहुत सारे हरे भड़े पड़े भी लगे हुए हैं।

इस दृश्य में मुझे बहोत सारे झूले भी नजर आ रहे हैं जिसमें बच्चे झूल रहे हैं।

ये झरना देखने में बहोत सुंदर लग रहा है और इसमें हरी हरी घास भी दिख रही है।

जिसके ऊपर राज्य परिवहन चंडीगढ़ लिखा हुआ है।

रूम दिखाई दे रहा है। जहां पे एक बहोत बड़ा टेबल रखा--

जिस पे बहुत सारा स्काई ब्लू कलर का गेट लगा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक रेस्टोरेंट नजर आ रहा है जिसका कलर --